अऊ वो कपड़ा सुखोए कोने काकर घर मे पलत हे काय अऊ केरा के पेड़ हे एती अऊ पेड़ दिखत हे कतता सारा पेड़

ओति दिखात हे अउ एक झि जींस पहिने जुता पहिने जिस ने जूता पहिने अउ दिखात हे पेड़ --

ओहा घाम तापे बर भी निकले हे अउ घास-फूस हे अउ पानी भरे हे अउ ओला मस्त घेर के राखे हे अऊ मस्त दिखत हे एकदम शानदार --

एहा एक ठो पुतली ये जेमा सुन्दर चुंदी पहिनाए हे कपरा पहिनाये हे अऊ लईका मन के ओला दिखाही आगु म जाके दुकान के तहा बढ़िया दिखत हे का--